तथा यहाँ पर बॉल ऊपर की दिवार सफ़ेद रंग की है।

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हू यहाँ पर ये पहाड़ जैसी गुफा है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

बह रहा है तथा यह पानी का रंग जो स्लेटी है आस - पास पेड़ - पौधे लगे हुए है।

छत खड़ी की गई वो सफ़ेद रंग की है।

आसमत का रंग नीला है तथा काला है।

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हूँ।

एक यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है तथा एक झंडा लगा हुआ है।

जो यहाँ पर दिवार है वो यहाँ पर भूरे रंग तथा पीले रंग की है।

यह एक कांच कांच के बाउल में रखी यहाँ पर एक चम्मच रखा हुआ है।

जो कि मिर्ची खरबूज तरबूज आदि यहाँ पर बहोत सारी सब्जिया पड़ी हुई है।

जैसा की में यहाँ देख प् रही हू यहाँ आस-पास पूरा घना जंगल है जो कि यहाँ बहोत सुन्दर लग रहा है।

जैसा की में यहाँ देख पा रही हू यहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर लाल तथा सफ़ेद कलर के गुबारे लगे हुए है यहाँ पर काले कलर की कुर्सी रखी है।

तथा यहाँ पर एक नील सफदे कलर की भी कुर्सी रखी हुई है।

दो कुत्ते तीन कुत्ते बैठे हुए है दो काले रंग के तथा एक भूरे रंग का बैठा हुआ है।

यहाँ पर हरे कलर के आधे कटे ड्रम रखे हुए है।

यहाँ की जो ज़मीन है वो भूरे तथा काहे रंग की है।

यहाँ पर पानी मंद-मंद गति में बह रहा है तथा यहाँ पानी का घर--

जैसा की मै देख पा रही हूँ की यह एक कॉफ़ी शॉप है।